सर तो देखने मे अच्छे लग रहे हैं | कोई गाँव का सीन है गाँव मे खिलौना बांटने के लिए आए हैं खिलौना बिस्कुट वगैरह --

में हमलोग भी घूमने कभी-कभी जाते है फैमिली के संग अच्छा लगता है घूमने मे बहुत मस्त आता है।

अभी अच्छी-अच्छी कामे कर रहा है बहुत ही अच्छी है ।

छरे बांध रही है छत ढालने के लिए --

यहां भी तो किराना का ही नहीं फल का दुकान है।

अच्छा-अच्छा फल है केले है सेब है।

बहुत सारा भीड़ है बहुत सारी दुकान है दुकान मे बहुत अच्छा भीड़ है लगा है यहाँ।

ये नदी में बहुत सारा बादल लगा हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है देखने मे बहुत सुन्दर दृश्य है बहुत ही अच्छी दृश्य है।

अच्छा-अच्छा स्वेटर है अच्छा मार्केट भी है अच्छा --

हम कैसे इसके बारे मे कुछ बताएँगे।

कॉपी कलम सबको वगैरा सब रखा हुआ है कुर्सी टेबल अच्छा से रखा हुआ है।

यह शादी विवाह का गेट है अच्छा सा गेट है लग रहा है किसी का शादी विवाह या रिसेप्शन या --

यह कोई विद्यालय का फोटो घीचा हुआ है।

सब पार्किंग टाइप का वृक्ष हैलेकिन सड़क है जगह सड़क है यहाँ --

चाहे जहाँ मर्जी वहाँ आदमी निकाल सकता हैअच्छा है बहुत ही अच्छी चीजे है ।

वृक्ष है अच्छा-अच्छा वृक्ष है |